यह चित्र ऑन रोड का दर्शाया गया है घर के बाहर किसी का खुला मैदान ल बनाया गया है सा--

सामान भी उपलब्ध है चाय के साथ नाश्ते का सामान भी रखा हुआ है।

पी_ओ_पी डिजाइनिंग से बनाया हुआ हैं बीच में--

और खाने की बच्चों के खिलौने की दुकान लगी हुई है मुख्यतः यहां--

कंप्यूटर रखा हुआ है प्रॉपर टेबल सजी हुई है कंप्यूटर सी_पी_यू समान रखा हुआ है।

यह चित्र लाइब्रेरी का दर्शाया गया है। इस कमरे में कई सारी अलमारियां रखी गई है।

यह चित्र बच्चों के स्कूल की हाई स्कूल में हो रहे एग्जिबिशन की हैं यहां पर बच्चों ने कुकिंग की हैं जिसे--